क्युकी मैं देख पा रही हूँ दोपहर का समय है यह एक बाजार है यहाँ पे बोहोत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे --

और एक कारम पार होती हुई नज़र आ रही है जो सफ़ेद कलर की है ऊपर छत में कुछ कुर्सियाँ रखी गई हैं ।

जैसा कि‍ मैं देख पा रही हूँ दोपहर का समय है यहाँ पे बहुत बड़ा घर है जो देखने में काफी --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं दोपहर का समय सामने बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है एक टूटी हुई गाड़ी है और एक पुराना कार मुझे नजर आ रहा है जो लाल कलर का है सामने में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

खिड़कियां भी है पेड़ पौधे है आस पास बहोत सारे घर भी मुझे नजर आ रहा है तार भी नजर आ रही है ये काफी बड़ा एरिया --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं सुबह का समय है यहां पे बहुत सारे मुझे पौधे-पेड़ नजर आ रहे हैं रेल की पटरियां हैं ।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं दोपहर का समय है यह एक दुकान है जिसमें लिखा हुआ है राजू किराना स्टोर यह एक सौदा का दुकान है बाहर में बहोत सारा सामान रखा हुआ है चावल है गेहूं है।

अंदर भी एक आदमी है उसमें बहुत सारा सामान है और बाहर में आम पत्ता से सजाया गया है लोहा का गेट है पीला कलर का बगल में एक होटल है --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ दोपहर का समय है सामने में बहुत सारे आदमी मुझे नजर आ रहा है कुछ आदमी बैठा हुआ है कुछ आदमी खड़ा है एक आदमी जा रहा है सामने में पानी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं शाम का समय है यहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ लोग खा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं घूम रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत --

दो आदमी सेम कलर का कपड़ा पहनना है हुआ है बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे है खुला मैदान है बिजली का तार है काफी बड़ा य --

और मोबाइल है कागज है जोकि देखने में काफी अच्छा--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ दोपहर का समय है यह एक दुकान है जो साड़ी दुकान है जो काफी सुन्दर लग रहा है बाहर में कुछ साड़ी है अन्दर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है कुर्ती है ब्लाउज--

कि मैं देख पा रही हूँ यह एक दुकान है जो कपड़े की दुकान है इसमें बहुत सारा कपड़ा रखा गया है कुछ अन्दर है कुछ बाहर है कुछ टंगे हुए है कुछ बच्चे के कपड़े है औरतो के कपड़े है ।

और मुझे पेड़ भी नजर आ रहा हैं काफी अच्छा लग रहा हैं मंदिर को अच्छा सिलवासे --

जैसे की मैं देख पा रहीं हूँ दोपहर का समय है सामने में एक बिल्डिंग है जिसमें लि--

कुछ घर भी है जो करकट की है जो देखने में काफी अच्छा--

जो बेग टंगा हुआ हैं और एक बिल्डिंग हैं जो बैगनी कलर का हैं आस पास बहोत सारे घर भी मुझे नजर आ रहे--